यह सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन --

यहां पर बहुत सारे झूले भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ लोग इधर उधर भी दिखाई दे रहे है।

फूल भी दिखाई दे रही हैं गार्डन में हर प्रकार फूल दिखाई दे रहे है यहां पर हरि घास भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहुत सारे लाइटे भी दिखाई दे रही है यहां पर दीवार का कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रहे --

दे रहा है शॉप में कुछ चाबियां भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं शॉप में एक जेनरेटर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारी लाइटिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारे पिंजडे भीं दिखाई दे रहें हैं।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

सारे बलून भी लगे हुए दिखाई दे--

यहां पर बहोत सारे ग्रिल भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

पूजा का गेट भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर --